पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है एक बोर्ड लगा हुआ है जो दिख रहा है गेट लगे हुए है जो दिखाई दे रहे है पेड़ दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर रैलिंग लगी हुई है जो दिखाई दे रही है पत्थर डले है जो दिखाई दे रहे है।

जो दिखाई दे रही है पेड़ लगे हुए है जो दिखाई दे रही है यह पर कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है।